करते अच्छा है देखने में भी अच्छा लग रहा है यहाँ पे गाना वाना याद आता है।

ये गार्डन है फ्लावर है यहाँ पे बोहोत सारे बोहोत तरीके के फ्लावर फ्रूट फूल दिखरा बहुत प्यारा गार्डन है।

सामने बैंक है एस.बी.आई. बैंक है उसके बगल में भी शायद जनरल स्टोर का दुकान है या कुछ है।

सामने पेड़ हैं सारे लोग बैठे हैं घूमने वगैरा गए हैंअच्छा है मतलब।

देख के वैसा ई लगरा है।

सामने हॉस्पिटल ही जैसा लग रहा है देखने में वैसे तो।